माला है। माला का कलर व्हाइट कलर में फुल हैं। उस के बीच में गोल्डन कलर का है और रेड कलर का है पीला कलर का भी माला है पिंक कलर का भी माला है।

एक म्यूजिकल रूम है जिसमें ड्रमस रखे हुए हैं पियानो रखा हुआ है गिटार रखा हुआ है बैलून्स लगे हुए हैं।

एक मंदिर है मंदिर पे ओम का निशान है गुंबद बना हुआ है लाउडस्पीकर लगा हुआ है माला लटकी हुई हैं लाइट्स लगी हुई है ।

एक पेट्रोल पंप है। इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है। हिंदी में भी इंडियन ऑयल लिखा हुआ है। ट्रैक्टर लगा हुआ है। पेड़-पौधे हैं इंडियन ऑयल के पीछे घर भी है लैंप पोस्ट भी है। बहुत सारी तारें जा रही है।